सामने एक लड़का दुकान पर खड़ा हुआ है दुकान पर एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यहाॅं पर बहुत सारे कारें रखी हुई हैं।

जा रहे हैं जिसके दो चक्के सामने से दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइटें जल रही है।

यहां पर बहुत सारी लड़कियां उपस्थित--

ऊपर पर सफेद रंग के बोर्ड पर हेल्दी पॉजिटिव हेल्दी जोन लिखा हुआ है।

तथा थोड़ी दूर पर एक काले रंग की स्कूटी खड़ी हुई है।

बिल्डिंग है और एक बोर्ड भी हरे रंग का लगा हुआ है।

यहां पर एक कपड़े का दुकान है।

सफेद रंग का कपड़ा पहेना हुआ है।

कतार पर क्रमबद्ध साइकिलें रखी हुई है।

तथा ऊपर भी एक लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ--

दरवाजे ऊपर ए_सी लगी हुई है।

यह एक शॉप का दुकान है।

नीचे बैठने के लिए सफेद तथा लाल रंग की कुर्सियां उपस्थित है।

तथा एक लाल रंग का दरवाजा जैसे बना हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा बांध बना हुआ है।

यहाँ पर बाढ़ आए हुए नदी का दृश्य है।

लोग देख रहे हैं दृश्य नजारा बहुत सारे पेड़ पौधे भी उपस्थित हैं।